और एक कमरे का गेट खुला हुआ है और इसके बाहर कुर्सियां भी रखी हुई है।

और रोड पर और यहाँ पर अ दो ठो कर कारे भी खड़ी है और उसके बगल पर भी एक कार खड़ी हुई है और वहा पर एक स्कूटी भी खड़ी हुई हैं।

ये एक प्रैक्टिल ल-लैब है। ये फिर प्रैक्टिल लैब है य-यहाँ पर बहुत सारा सामान सामग्रियां रखी हुई हैं।

ये एक सेंचुरी गेट है और ये गेट काफी बड़ा है और यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है।